फोटो मे मुझे बहुत बढ़िया मतलब जो सबसे अच्छा लगा ए पार्क का शो फीस बैठने के लिए आराम के लिए और ये बच्चों के खेलने के लिए जो जगह है बनाई हुई है।

ये एक आंटी बैठी हुई है जिसने पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई है इसके काले-काले बाल भी दिख रहे है।

ये बगल में शिमला मिर्च जैसे लगा रहा है सामने गाजर भी की ये और ही कुछ पीले कलर की केले भी टंगे हुए हैं एक आदमी भी खड़ा हुआ है।

मतलब क्या ही बोलूं यार मतलब उसे पहले कभी ऐसा सीन नहीं देखा इतनी नट एक सात रखी है मतलब इतना सारा लोहा बहुत गोल गोल कुछ --

बहोत बेहतरीन सा लग रहा है अ मतलब ये समझ नहीं आ रहा क्या है भाई ये गोल गोल सा--